यह एक पार्क है। यह पार्क बहुत बड़ी है यह पार्क में बहुत सारे घुमने कि जगह है। इस पार्क मे बहुत सारे आदमी आए हुए है। काफी सारे बच्चे --

ये एक दुर्गा मंदिर है यह दुर्गा मंदिर में एक मूर्ति दुर्गा माँ की लगी हुई है यहाँ पे बहुत सारे भक्तगण --

यह एक बाजार है यह बाजार में --

देवी माँ की मूर्ति है।

बहोत सारे आदमी यहाँ पे आये हुए हैं।

खड़ी है यह महजिद में --

यह आइना के पास --

घूमने करने के लिए पार्क में आए हुए है।